ये एक रोड का फोटो है जिसमे बहुत सारे लोग जा रहे है और यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई हैकार खड़ी है और एक साइकल गाड़ी भि खड़ी है।

और वह भी व्हाइट कलर की फ्रॉक पहना है एक धोती पहनाया है व्हाइट कलर की और उसपे गोल्डन कलर की लेस लगी है गले में एक चैन है और माइक लगा हुआ है बूंदे पहना हुआ।

ये एक स्कूल के बाहर का फोटो है जिसके बाहर बहुत सारे लोग जमा हैं और मर्द और औरत दोनों हैं यहाँ पे गा दो दो-तीन गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं।

आस-पास बाउंड्री बनी है उ बाउंड्री के बाहर पेड़ लगे हुए है लम्बे-लम्बे आसमान भी दिख रहा है।

उसके ऊपर एक पेड़ लगा हुआ हैं तार दिख रहे हैं इधर आसमान भी दिख रहा है दो बोर्ड लगे हुए हैं जिसपे कुछ लिखा है।